एक बकरी दिखाई दे रहा है बकरी का रंग सफ़ेद और --

इसमें सात-आठ आदमी दिखाई दे रहा है।

दो दिखाई दे रहा है।

एक घर दिखाई दे रहा है।